साइड में एक टेबल भी रखा हुआ है।

फोटो का अंदर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

और ग्लास भी रखा हुआ है।

इसका अंदर में कुछ कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखा हुआ है।

एक आदमी ने एक आदमी का फोटो खींच रहा है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्थर दिखाई दे रहा है।

चार डॉक्टर दिखाई दे रहा है।

यहां वहां दिखाई दे रहा है।

फोटो का अंदर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दुकान बंद हो रहा हैं।

सोफा दिखाई दे रहा है।

और दूर में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।